बार टेंडर ने सूट पहना हुआ है।

यह एक क्लीनिक का दृश्य है।

कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं।

यह यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यू_ई_एम --